यहां एक बहुत बड़ा पार्क जैसा लग रहा है और बाहर एक फावड़ा दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे और बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहा है और एक बैठने वाला भी लग रहा है शायद पार्क जैसा है और रोड भी काफी अच्छे लग रहे हैं।